बड़े बड़े बॉक्स में भी मछली रखी है।

और बहुत सारे लोग भी हैं।

है जिस में एंगल में बहोत सारे कपड़े कपड़े पूरे एंगल्स में टांगे गए हैं।

और कूलर भी है बगल में एक सीढ़ी गई हुई है।

ग्राउंड और उसे ग्राउंड में दो बस खड़ी हुई है।

और कुछ लोग कसरत कर रहें हैं लोहे से बने हुए बॉल --

इस चित्र के अंदर बहुत बड़ा ऑफिस है जिस पर दीवाल पर ऐ_सी लगी हुई है।

और बहोत सारी पेड़ भी दिख रहे हैं।

गेट है और खिड़की भी है।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

और दो लोग हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं ऊपर एक गमला लटक रहा है फूल का।